गाइज़ यह कुछ कपड़ों का मॉल है यहां पर देखिए छोटे-छोटे बच्चों के और यहां पर अह कितने बढ़िया तरीके के कितने पीआईवी कपड़े लग रहे हैं यहां पर टंग रहे हैं यह बहुत बढ़िया लगेंगे छोटे बच्चों पे --

इसके बॉर्डर के थोड़ा अंदर हम लोग इन्हें देख रहे हैं यहां से दूर से थोड़ादोसो तीनसौ फोटो क्लिक हुआ है वो कितना बड़े नज़र है।

देखिए गाइस ये कोई किराना शॉप है और यहां पर हमें हर तरीके का आइटम जो हम डेली यूज यूज करते हैं वो इजली मिल जाता है और इस दुकान से इस ये दुकान बहुत फायदेमंद है हमारे लिए और देखिए इन्होंने फोटो क्लिक --

यहां से हम अपनी पेंसिल वगैरह कुछ भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सवाल --

देखिए गाइ ये मेरे को लगता है कोई किराना स्टोर है बड़ा --

यहां पर हम इजली अपने जरूरतमंद चीजें जो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वह इजली ले सकते हैं।

ऐसी-ऐसी जगह ऐसे-ऐसे मार्केट ऐसी-ऐसी दुकान खुलनी चाहिए।

देखिए यहां पर यह कोई छोटा सा किराना स्टोर है यहां पर सभी चीज अवेलेबल है इसमें यहां पर हमारी पूजा सामक्री वगैरह सामान सब आसानी से मिल जाएगा।

और मूर्ति वगैरह और दिवाली का सामान भी यहां पर मिल रहा है।

गेम्स है जब मैं छोटा था तो मैं भी बोहोत ज्यदा गेम खेलता था और खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है छोटे-छोटे छोटे जोड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखिए कितने पब --

उनके टांग में मेरे को लगता है प्रॉब्लम है।

देखिएगा मेरे को लगता है ये दोनों कोई सिंगर वगैरह हैं और ये देखिए कोई मतलब गाना वगैरा गाने आए हैं और पीछे मेरे को लगता है लोग बाग भी बैठे हुए हैं जो इन्हें सुनने के लिए बेताब है।

यहाँ पर यह लोग इस लड़के ने यहां पर ये फोटो भी खींचा रखी है और पीछे देखिये यह फुआरा है जो चल नहीं रहा है अभी।

इनको ये बैंक मैनेजर जानकारी दे रहा है बहुत बढ़िया-बढ़िया किसानों को क्योंकि इनसे पढ़ना नहीं आ रहा इसलिए --

ये काफी बड़ी-बड़ी यहाँ पे रोड वगेरा है और यहाँ से ये ऑटो वगैरह मिल जाते है ईजिली यहाँ से मतलब की कोई टेम्पो अड्डा लग रहा है।

इसके अंदर घूमने में मजा भी बोहोत आएगा बाहर से तो देखने में चर्च वगैरह लग रहा है। यह अंदर से बोहोत ज्यादा थोड़ा डरावना भी है।

खंभे वगेरा कितने बढ़िया तरीके से यहां पर बने हुए हैं यहां टावर भी यहां पर ज्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं है रोड भी काफी साफ है यहां पे और ये नजारा भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है।